इस चित्र में एक बड़े बहोत बड़े से हॉल के अंदर--

इसके सामने कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहा है।

उसके सामने खड़ा है और आसपास भी।

जिसके आस पास लाइट लगी हुई है।

फ्लावरों की दुकान दिखाई दे रही है।

और एक लेडीज भी खड़ी नजर आ रही हैं।

और कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग आते-जाते भी नदर आ रहे हैं।

और घास भी लगी हुई है।

और यह मस्जिद हरे और सफेद रंग से रंगी गई है।

यहां पर खी नीली और सफेद रंग की लाइटे लगी हुई है।

कुछ घर और दुकानें भी--

और एक पेट्रोल पंप भी दिखाई दे रहा है।

बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और पीले रंग के दीवारें है रंग-बिरंगी परते डली है।

इस चित्र के अंदर एक कांच की बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जिसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े है।

दिख रहे हैं और बड़ा सा टावर बना है।

बहुत सारे तार भी नजर आ रहे हैं।

और पेड़ भी आसपास लगे हुए हैं।